ऊपर नगर निगम सरनपूर लिखा हुआ है।

और नीचे कुछ गमले व बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इसके किनारे मिट्टी भी पड़ी हुई है जोकि सूखी हुई है।

और छत में एक पंखा भी लगा हुआ है।

और दीवार पर एक गाड़ी का पोस्टर भी लगा हुआ है।

यही पर एक व्यक्ति बैठे हुआ है।

और एक महिला भी है जिसने पत्थर पर पैर रख रखा है।

यह एक बहोत सुंदर कमरा है।

और इसके साइड में एक बिजली का बोर्ड भी है।

जिसमें कुछ तारे जा रही है।

बच्ची के हाथ में एक थैला भी है और इसके पीछे एक लड़की भी खड़ी है।

और पीछे कुछ महिलाएं भी खड़ि हुई है।

और बहोत सारे पाइप भी लग रहे हैं और एक व्यक्ति खड़ा है जिसने अलग ड्रेस पहनी हुई है।

यह एक बहोत सुंदर डॉक्टर की दुकान है।

और साइड में एक सोफा भी रखा हुआ है।

और साइड में बोहोत सारी मामबत्तियां जला रखी हैं।

और छत में बहुत सारे पंखे भी लगे हुए हैं।

जिसके अंदर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे उगाए जाते हैं।

यह एक कमरा है और इस कमरे में दो विंडो भी है जिन पर शीशे लगे हुए हैं।

और बहुत सारी मेज भी रखी हुई है मेज पर एक बोतल भी रखी हुई है।

और इसके बाहर बहोत सारी कारे वे गाड़ियां खड़ी हुई है।

यहां पर ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर तीन बाइक उतरी हुई है।

छत में बोहोत सारी लाइटें लगी हुई है और दीवार पर एक पंखा भी लगा है।

दुकान के बाहर कुछ कैरम बोर्ड भी टंगे हुए हैं।

ये एक डॉक्टर की दुकान है।

छत में एक पंखा भी लगा हुआ है।

पीछे दीवार पर बहोत सुंदर डिजाइन भी बना हुआ--

यह एक बार्बर की दुकान है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

और आइसक्रीम के साइड में बहोत सारी चम्मच भी रखी हुई है।

यहां पर एक फलों का गुच्छा भी रखा हुआ है।

पीछे एक ब्रिज भी जा रहा है।

यह एक दुकान है जिसमें एक लैपटॉप भी रखा हुआ है।

और एक प्रिंटिंग मशीन भी रखी हुई है।

और मेज पर एक पन्नी भी रखी हुई है।